ये किसी मॉल का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी बोरी के पैकेट रखे हुए दिख रहे हैं।

एक जीना भी लगा हुआ है नीचे टाइल्स भी लगी हुई है।

यह एक किले की दीवाल बनी हुई दिखाई दे रही है जिसमें बोहोत बड़े-बड़े पत्थर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।